इस पिक्चर के माध्यम से ये कोई बड़ा हॉल लग रहा है।

महात्मा बुध की फोटो नजर आ रही है। बाबा साहब भीम राव आंबेडकर भी अभी फोटो नजर आ रहा है और भी कई फोटो हैं जो नजर आ रहें हैं।

योकि डांस करते नजर आ रही है।

जिसमें बहुत जिसके सामने बहुत महिला है और पुरुष खड़े हैं जो की सामान खरीद रहें हैं और कुछ बच्चे भी हैं।

ये हमें यहाँ एक सैलून नजर आ रहा है जिसका --